ब्लैक कलर के शूज पहना हुआ है बच्चा नीचे मैट बिछा हुआ है।

टीचर का कैरी बैग बोटेल हमें दिखाई दे रहा है।

पीछे छोटे छोटे घास हमें नजर आ रही हैं।

एक बड़े बड़े झाड़ां भी नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी लकड़ी नजर आ रही है।

ये जो तस्वीर है वह एक रेस्टोरेंट की है।

इस तस्वीर में फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं बलूंस भी लगे हुए हैं।

टॉवल का कलर ग्रीन है इसमें ऐ_सी भी हमें नजर आ रही है।

चार कूलरे नजर आ रही है।

तस्वीर में फैन चलते हुए नजर आ रहा है।

ये जो नजर आ रहा है वो श्री साई ए_सी बार शॉप --

रात है उसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है जो हमें नजर आ रहा है।

ग्रीन कलर की सिग्नल की वजह से वो वहां पर रुके हैं।

कैस्ट्रॉल सर्विस ऊपर लिखा हुआ है।

नीचे डोर मैट बिछा हुआ है।